एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। नीचे दो आदमी बैठे हैं। जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं और चेयर पर एक लड़का बैठा हुआ है।

और बहुत सारे लोगों की भीड़ है। एक आदमी अ- हाथ रिक्शा लेके अ- रिक्शा को चला रहा है। पीछे कुछ सामान रखा हुआ है और बहुत सारी दुकाने हैं यहाँ --

बैग भी रखा हुआ है। सामने एक लड़की चेयर पर बैठी है जो कि बुक लिए है।